यहाँ पर कोई नहीं है बैठने वाला बेंच लगा हुआ है ये बहुत सुन्दर है ।

ये देख सकते है एयरटेल नेटवर्क है।

सजावट की हो डेकोरेशन के काम में बैलून है रेड ब्लू ऑरेंज कुर्सी है।

मानसिक वर्क है शॉप है मारुती --

यहाँ टीचर भी है दो --

बहुत सुन्दर डेकोरेशन है लाइट फूल का --

ए एंट्री गेट भी है और यहाँ एंट्री होता है और यहाँ डस्टबिन भी रखा हुआ है।

और ये बहुत सुंदर अच्छा दिखाई देता है।